पाइप है उसके बाद पानी भरने वाला ड्रम भी है।

पानी का बोतल भी रखा हुआ है और उसके नीचे एक टेबल है।

एक शॉप का दुकान है जिसमें बाहर में कुछ गद्दे रखे हुए हैं और कुछ कपड़े भी लटक रहे हैं बार बाहर में एक डस्टबिन भी --

अमूल पनीर लिखा हुआ है साइड में सुधा दही सुधा स्पेशल दूध भी है।

मैं और यहां पे बहोत सारे लड़के मैच खेल रहे एक बैटिंग भी कर रहा है और उसके साइड साइड में--

आदमी भी आ रहा है वहां पे एक गाय नजर आ रहा है और उसके साइड साइड में--